यह नज़ारा चिड़ियाघर का प्रतीत होता है। जहाँ पर बहुत सारा --

तब इसको सर्विस करवाने जाना पड़ता है | ये सर्विस सेंटर में सर्विस कर रहा है। इसकी जब सर्विस हो जाएगी --

ये एक फल की दुकान है यहाँ पर अंगूर काले अंगूर --

इनका सेवन काफी महत्वपूर्ण रहता है। इनको खाया भी जाता है।